एंच फुंड हम त कुछ धुंद और कुछ कुरेरु क्र दिखेण लग्युं नीसाण फुणा हम त कुछ गों या फिर शहर करं दिखेण लग्यां जगता हम त कुछ कूड़ा बाटा व त कुछ टोकरान --

ये चित्र मा हम तें एक बड़ी जगह छ दिखेण लगी जफणा हम तें यफणा कुछ पहाड़ छ दिखेण लग्यां जगा उंडे फुंडे हम तें बहोत सारा ढुंगा दिखेण लग्यां निस फणा हम तें कुछ बट्टा दिखेण लग्यां।

ये चित्र मा हम तें बड़ी जगह छ दिखेण लगीं जगदा हम तें बढ़ा बढ़ा पहाड़ छिन दिखेण लग्यां पहाड़ फणा हम ते जंगल दिखेण लग्यां ढलान दिखेण लगीं।

ये चित्र मा हम त बड़ी जगह दिखेण लगीं जगदा ओर पोर बड़ा बड़ा पहाड़ छन जंगल छन बिच फुंड हम त एक बड़ू गों करं दिखेण लग्युं।